उसने ब्लू कलर की टी-शर्ट और ग्रीन कलर का पैंट पहना हुआ है सर्फेस जो है यहां पे रेड रेड दिखाई दे रहा है और यहां पे एक दो मशीन और भी रखी हुई है ये जिम जैसा व्यू समझ आ रहा है।

यहां पर नीचे जो है बहोत ही सारे लोग खड़े हुए हैं बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है कुछ लोग है जिन्होंने बैग लेकर कहीं जा रहे हैं

यहां पे बहुत ही सारे कर्टन है जो की ब्लू कलर के है यहां पे बहोत सारे लोग हैं जिन्होंने लाल कलर की टोपी पहनी हुई है एक आदमी जो हैवो सांता क्लॉस की तरह बना हुआ खड़ा हुआ है।

और इसका जो कलर है दरवाजे का वो काला कलर ये पूरा लोहे का है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर केले के पत्ते लगे हुए हैं जो की बहुत अच्छे लग रहे हैं।

इसके पीछे जो दीवाल है दिवाल में वाइट कलर पुता हुआ है और यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक लोहे का गेट है जिसमें खंड-खंड बने हुए हैं यहां पर एक आदमी है जो की गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है बहुत सारी गाड़ियां जो है उसके आस-पास खड़ी हुई है यहां पे एक बहुत बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है।

इसके जस्ट ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और ये वहां पर कुछ कर रहे हैं।

यहां पर एक जगह है जहां पर अंदर जाने के लिए अलग से पट्टी बनी हुई है और यहां पे कुछ कांच लगी हुई है कांच के ऊपर साइड में एक ब्लू कलर का बोर्ड है।

यह ब्लू कलर की है ग्रे कलर की है और बहुत ही प्यारी लग रही है ये नाव और उसके आस-पास जो है बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

ब्लू व्हाइट ब्लेक अलग अलग टीम के लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने हुए है और नीचे घास जो है वो ग्रीन ग्रीन दिख रही है।

वहां बाजू में कुछ जगह भी है जाने के लिए और एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कुछ टंगा हुआ है।